मेज पर पानी के गिलास रखे हैं।

यह एक निर्माण स्थल की तस्वीर है।

एक हेलमेट घास पर रखा हुआ है।

यह एक झील का सुन्दर दृश्य है।

दूर पहाड़ और पेर दिख रहे है।

यह एक बाजार का फोटो है।

अलमारीओ में समान अच्छी तरह रखा है।

यह एक पहाड़ी नदी का दृश्य है।